और इसमें एक नन का घर भी दिखाई दे रहा है जिसका दीवार का कलर व्हाइट और रा लाल कलर का है।

इस दृश्य में तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो तीनों व्यक्ति काम कर रहे हैं।

कुर्सी लाइट और पंखा दिखाई दे रहा है।

और इस दृश्य का दीवार का कलर वाइट कलर का है।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

और बहुत सारे बोड़े में भी समान रखा हुआ है।

इस दृश्य में यह एक दुकान का दृश्य लग रहा है।

और ट्रक का कलर है पीला कलर का है।

और नीचे सीमेंट वाला ईंटे लगाया गया है और दुकान के अंदर बहुत सारे सामान है।

और इस दृश्य में दीवार का कलर व्हाइट कलर का हैं और नीचे टाइल्स लगा हुआ है।

इसमें पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

और इसमें एक घर दिखाई दे रहा है और घर का दीवार का कलर है आसमानी कलर ।

और इसमें तिरंगा वाला लरी से सजाया गया है और नीचे कुछ कलर से लिख रहे हैं।

इस दृश्य में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और सारे लोग अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं।

इस दृश्य में एक नाव दिखाई दे रहा है।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

और एरोप्लेन का कलर है व्हाइट और लाल कलर का है।